इस चित्र में हमें एक गार्डन देखने को मिल रहा हैं और बहोत सारे बिल्डिंगे भीं देखनो को मिल रहीं हैं।

बहोत सारे नारियल का पेड़ भी देखने को मिल रहा है।

इस घोड़े का रंग बेदामी कलर का है और हमें एक दीवाल देखने को मिल रहा है जिसका कलर व्हाइट है।

इसमें हमें बहोत सारे पेड़ पौधे देखने को मिल रही है।

और हमें बहुत सारी खंभे वाली लाइट देखने को भी मिल रही है।

चित्र में हमें बहोत सारे कैरेट देखने को मिल रही है।

इस चित्र में हमें बहोत सारे बॉक्स भी देखने को मिल रही है।

और हमें छोटा छोटा मोटा पौधे देखने को मिल रहा है।

और हमें बहुत सारे खंभे देखने को मिल रहे हैं।

इस कांच पर साइड साइड घास का ड्राइंग किया गया है।

इसमें हमे बोहोत सारे छाता देखने को मिल रही है रंग बिरंगे --

और हमें गुलदस्ता देखने को मिल रही है दो।

इसमें हमें पांच छे लेडिज देखने को मिल रही है।

और हमे एक ऊं बॉक्स देखने को मिल रही है।

और हमें एक आदमी देखने को मिल रहा है जिस आदमी ने और ठेला लगा के रखा है।

चित्र में हमें पानी का थर्मस देखने को मिल रहा है।

इस चित्र में हमें बहोत सारे आदमी को देखने को मिल रहे ना --

और इसमें हमें इंग्लिश टॉयलेट भी देखने को मिल रही है।

और हमें जलाराम हाउस देखने को मिल रहा है और हमें किराना दुकान देखने को मिल रहा है।

और हमें बहोत सारे लोग भी देखने को मिल रहे हैं और हमें बहोत सारे टेबल कुर्सी भी देखने को मिल रहा है।

इस चित्र में हमें गार्डन देखने को मिल रही है और इसमें हमें मेज बैठने वाला देखने को मिल रही है।

इस चित्र में हमें एक अस्कुल देखने को मिल रही जिसका कलर व्हाइट है।

इस स्कूल में हमें बहोत सारे रूम देखने को मिल रही है।

और हमे तीन खम्भे वाली लाइट देखने को मिल रही है और हमे बहोत सारे लड़के देखने को मिल रहे है।

और हमें खाली जमीनें देखने को मिल रही हैं।

चित्र इस चित्र में बहुत सारे पेड़ देखने को मिल रही है।

इसमें हमे एक बिल्डिंग भी देखने को मिल रही है जिसका कलर व्हाइट है।

हमें एक टेबल देखने को मिल रहा है और उसके ऊपर एक थर्मस रखा है और हमें गिलास देखने को मिल रहा है।

और हमें एकम ब्लैक कलर का खंबा देखने को मिल रहा है।

और हमे बिसलेरी का बॉटल देखने को मिल रहा है और हमे गोनी देखने को मिल र--

इस चित्र में हमें गमला देखने को मिल रहा है पौधे लगाने वाला।

और हमें पतरे घर देखने को मिल रहा है जिसमें बहुत सारे कुर्सी टेबल लगाया गया है।

और हमें अ सीढ़ी देखने को मिल रही है।

और हमें इस घर का कलर देखने को मिल रहा है जिसका कलर येलो है और रेड है।

मैं हमें बहोत सारे आदमी औरत देखने को मिल रहे हैं।

इसमें हमे एक मंदिल का कलर व्हाइट देखने को मील रही है।

इस चित्र में हमें बिल्डिंग देखने को मिल रही है।

और हमे बहोत सारे कपड़े की दुकाने देखने को मिल रही है।

इस चित्र में हमें होटल देखने को मिल रहा है।

में हमें बहुत सारे कुर्सी देखने को मिल रहा है।

इस चित्र में हमें एक मंदिल देखने को मिल रही है।

और हमें एक पानी देखने को मतलब जिसके अंदर फव्वारे निकल रहे हैं।

व्हाइट कलर की कुर्सी देखने को मिल रहे उससे पुलिस बैठी हुई है।

इसमें काफी सारे पेड़ पौधे देखने को मिल रहा है।

और हमें चॉकलेट का डब्बा और हम्म मिठाई का डब्बा और बिस्किट का डब्बा देखने को मिल रहा है और --

और हमें एक ऑटो देखने को मिल रही है।

और हमें आसमान में हं तार देखती हुई देखने को मिल रहा है।

इस चित्र में हमें हवाई अड्डा देखने को मिल रही है।

हमे बहोत सारी गाड़ियां भी देखने को मिल रही है।

चित्र में हमे एक मे मैन मंडप देखने को मिल रही है।

और हमें बहुत सारे पेड़ पौधे देखने को मिल रही है।

एक पाइप देखने को मिल रहा है और हमें एक पोस्टर भी देखने को मिल रहा है।

और हमें पौधे से बहुत सुंदर बाउंड्री किया हुआ देखने को मिल रहा है।

और हमें मैच देखने मैच देखने वाला मिल रहा है।

बहोत सारे बुक और पेन भी देखने को मिल रहा है।

और हमें बहोत सारी गाड़ियां देखने को भी मिल रही हैं।

हमें सूर्य भगवान देखने को मिल रहे हैं।